इस पिक्चर में एक फंक्शन की फोटो दिख रही है जिसमें सफेद टेंट लगा हुआ है।

ये एक बैग की दुकान दिख रही है।

जिसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है।

जिस पे ए टू जेड बैग --

खिड़कियों में शीशे भी लगे हैं।

और बराबर में एक फ्रिज भी धरा है।

जिसमें दो कोंटर धरे हैं।

जिसमें एक लोहे की रेलिंग लगी हुई है।

बराबर में एक खिड़की लगी है।

इसके बराबर में एक कलर की दुकान दिख रही है।